यहाँ पर आप जो देख सकते है कि काफी ज्यादा पेड़ पौधे है जो कि काफी ज्यादा पेड़-पौधे है तो बट सारे ग्रीन है और ग्रीन होने भी चाहिए हमारे पर्यावरण के लिए और काफी शुद्ध है और ठीक-ठाक है चलिए ठीक -----

और ये काफी हद तक ये जो पौधे हैं काफी मस्त लग रहै है और यहाँ पे इस पौधे का जो स्टाइल है वो काफी तगड़ा है और निचे मिट्टी है घास उस है बाकि तो ये बहोत ही अच्छे हैं ।